क्रीम भी रखी हुई है।

पेंट के दीवालो पे देखने मिल रहा है।

इस पिक्चर में मुझे घर देखने को मिला है।

और आदमी भी दिखाई दे रहे हैं।

इस पिक्चर में बहोत सारा शराब दिखाई दे रहा है।

मुझे इस पिक्चर में बहुत सारा इंसान दिखाई दे रहा है।

दरवाजा में स्लाइड लिखा हुआ है।

गाय भी देखने को मिल रहा है।

और बैंक के बाहर बहोत सारा इंसान भी--

मुझे इस पिक्चर में ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा टेबल भी देखने मिल रहा है।